एक बाल्टी है यह पोस्टर ओस्टर भी लगा हुआ है इधर आदमी है ऐसा लग रहा है उद्घाटन होने वाला है।

टेबल दिख रहा है दिवार में रेड कलर का ऐसे पेंट लगा हुआ है और ऊपर में पंखा की पता नहीं क्या है।

एक पोस्टर भी लगा है आदमी खोल रहा है के या बंद कर रहा है ऐसे ही कुछ स्क्रू टाइट नहीं है।

यह अपने से तो लाया है कुछ-कुछ सामान बढ़िया सा है।

कोई किसी की शादी -वादी हो या कुछ भी हो आ ठूठू यहाँ से लेजते है जो काम आता है पहनाने के लिये।